सभी मौजूद हैं जिनकी आरतियाँ हो रहीं हैं ।

सभी वस्तुएँ अवेलेबल होती है यहाँ पर ।

ये मंदिर है जो मुझे शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है जोकि इमारत के रूप में यहां पे हैं।

कितना सुंदर और अद्भुत वातावरण यहाँ का है यहाँ पे काफ़ी सारा एनवाॅरमेंट भी है।

अगल बगल हरा भरा वातावरण हैं नीचे पानी हैं। बहोत ही पानी का जो तालाब है काफ़ी बहावदार है।

और ये कार को अद्भुत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे कार और भी अच्छी लगने लगे। इनका कार्य यही है और ये वो कर रहे --

और हमें दवाओं की आवश्यकता हमेशा होती --